कमरे की बाईं तरफ ऊपर बिजली की लाइन दिखाई दे रही है।

कुछ पौधों में सफेद ब्ल्यू भी नजर आ रहे--

ये तस्वीर एक पार्क की है जिसमें एक मूर्ति लगी हुई है।

एक आदमी लाल रंग की टी शर्ट काली पैंट पहने हुए दिख रहा है।

केसरी खरबूजी कलर की शर्ट पहने हुए है।

इस तस्वीर में दो बिल्डिंगे कई सारी रंग बिरंगी लाइटों से सजी हुई दिख रही हैं।

बिल्डिंग के बाहर एक रिक्शे वाला दो सवारी बिठाले हुए रिक्शे से जा रहा है।

ये तस्वीर एच_डी_एफ_सी बैंक की है।

इस तस्वीर में एक छात्रा आवास सा बिल्डिंग दिख रही है।

इसमें जमीन में हरी भरी घास है और दो तरफ रोड भी दिखाई दे रही है।

एक आदमी हरा कुर्ता और सफेद पजामा पहने हुए है।

डीजल भरवाने के लिए खड़ा है।

हाथ में सफेद कागज पकड़े हुए हैं।

काली पैंट भी पहने हैं।

इस पर लिखा हुआ है श्री राजेश्वरी बुक लैंड ।

मेजो के आगे दीवार में लाल टाइल्स लगे हुए--

दो आदमी नजर आ रहे हैं जिसमें एक आदमी बैठा हुआ है और एक खड़ा हुआ है।

ये जमीन पर एक ढोलक रखी हुई है।

इसमें एक औरत रिसेप्शन पर बैठी नजर आ रही है।

कई सारे हरे भरे पेड़ भी लगे हुए हैं।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

एक आदमी ने नीली शर्ट और काली पैंट पेहन रखी है।

इस तस्वीर में एक बोर्ड लगा दिख रहा है।

उसके बाहर की तरफ मे कई सारे मेडल्स रखे दिखाई दे रहे हैं।

जिसपे लिखा हुआ है लखनऊ की मसालेदार चाय।

बाहर एक आदमी चाय पीने के लिए खड़ा हुआ है।

इस तस्वीर में एक बाहर की तरफ एक मूर्ति लगी हुई है जो सफेद रंग की है।